कुछ छोटे कंटेनर दिखाई दे रही हैं।

गाड़ी दिखाई दे रही है। सिम दिखाई दे रही है। तार केबल दिखाई दे रही है। सड़क दिखाई दे रही है। आसमान दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे वाइट कलर पूता हुआ अथी पेंट दिखाई दे रहीं हैं।

एगो चिडियाँ दिखाई दे रही है। बिजली के खम्भे दिखाई दे रहें हैं। लाइट दिखाई दे रही है।

बिजली का खम्भा दिखाई दे रहा है। ईटें दिखाई दे रही है। पत्थर दिखाई दे रहा है।

लाइट्स दिखाई दे रही है। वाइट ब्लू और येलो कलर की। बिजली के तार दिखाई दे रहें हैं।

आइना दिखाई दे रहा है।

स्विचबोर्ड दिखाई दे रहा है एक ब्लैक कलर का प्लग दिखाई दे रहा है।

लोग दिखाई दे रहें हैं। पेड़ पग दिखाई दे रहें हैं। पत्थर दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे दो हाथी दिखाई दे रहें हैं। घास का मैदान दिखाई दे रहा है। एक लकड़ी दिखाई दे रही है।

कारपेट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का पिंक वाइट और ब्लू कलर के बलूंस दिखाई दे रहे हैं।

केले के पत्ते दिखाई दे रहें हैं।

ये येलो कलर पूता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी छत पे वाइट कलर पूता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे झरना दिखाई दे रहा है। पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्थर दिखाई दे रहा है कंकड़ दिखाई दे रहा है।